सदी के गेट का फोटो दिखाया दे रहा है। जिसके पीछे के साइड फूलो के साइड राइट साइड कुछ डिज़ाइन लगे दिखाई दे रहे है।। ऊपर के साइड से कुछ पीले पदादेसे--

पर फूल दिखाए दे रहे है। नीच अंदर के साइड कुछ लाइटिंग दिखाई दे रही है। टू व्यक्ति

मार्केट का फोटो दिखाई दे हा है जिसके अंदर कागच के अंदर पैक फूलों दिखाई दे रहे है फूलों के ऊपर कूच पन्नी लगी दिख रही है सामने एक टोकना दिख रहा है जिसके अंदर फूल के कागच को-पर फूल बना के रखा दिखाई दे रहा है सामने कूच

के अंदर का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके अंदर तीन ब्लैक कलर की चैर रखी दिखाई दे रही है उसका नीचे का स्टील का दिखाई दे रहा है सामने एक लकड़ी का प्लास्टिक का एक पार्ट ड्रोवर दिखाई दे रहा है सामने एक साइड मे कूच कांच लगी है उसके पास मे कूच लकड़ी के ड्रोवर बने हुए दिख रहे है।

ये अंदर का फोटो दिखाई दे रहा जिसका लाइन से दो तीन चार चैर बनी हुई दिखाई दे रही है चैर काली कलर भी दिख रही है नीच का स्टैन्ड स्टील का दिखाई दे रहा है पीछे एक ल-प्लास्टिक का कूच एक ड्रोवर बना दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कूच समान--

उसपे लड़का दिखाई दे रहा है सामने लकड़ी का व्हाइट कलर का ड्रोवर बना दिख रहा है जिसमे से एक ड्रोवर खुला दिखाई दे रहा है उसके अंदर एक मसिन रखी दे रही है ड्रोवर के ऊपर कूच समान ढका दिख रहा है सामने एक डंडा रखा जिसने अंदर पडदा लगा दी--

लकड़ी से किसी दी गते बना हुआ दिखाई दे रहा है एक पेड़ को जिस डिजाइन दी गई है गेट मे कुछ ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सामने छोटे- छोटे पेड़ कट के कुछ ब्लॉक बनाए हुए दिखाई दे रहे है जिसके--